वहाँ पर अच्छे पेड़-पौधे आ सकते हैं उसके पेड़-पौधे के पिछे एक बिल्डिंग भी है।

हम केंद्र पर एल.एल.बी.सी. कराने के लिए दो जने बाहर खड़े हुए है।

वाओ एक माता रानी का मंदिर है इतने सारे दर्शन करने आये है पुलिस वाले भी दर्शन करने आये है।

यहां पे एक मकान की साइड दिवाली की झल लगे हैं बहुत ही अच्छे से डिजाइन से हुई हैं और दो-चार जने खड़े हुए हैं उसके बाहर भी एक जना की बाइक खड़ी हुई है।

और यहाँ सभी प्रकार के मोटर सारे बंद दुकान पर है।